यहां पर एक छोटा सा बेड दिखाई दे रहा है।

यहां पर छोटे पत्थर कुछ बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

और साइड में मच्छर मारने की भी दवाई रखी हुई है।

यह एक ट्रैक्टर का गैरेज दिखाई दे रहा है।

यहां पर गेट पर शीशे भी लगे हुए है।

साइड में कितने सारे घुटने का दर्द सियाटिक चेहरे का लकवा आदि।

यहां पर कितनी सारी जेंट्स लेडीज और बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक लेडिज भी दिखाई दे रही है और लेडिज के पीछे एक काली टंकी दिखाई दे रही है।

जेंट्स ने हेलमेट लगा रखा है और लड़की ने पीछे एक बैग टांग रखा है।

सामने एक पहाड़ी भी दिख रही है और ऊपर बारिश जैसी बादल हो रही है।

सामने एक पानी की टंकी भी दिखाई दे रही है।

यहां पर थमले पर बीच में और नीचे ग्रीन कारपेट लगाया गया है।

ऊपर छोटी छोटी अलमारी बनी हुई है।

यहां पर कितना सारा सामान हेयर का रखा हुआ है।

यहां पर टेंट भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर रेड कारपेट बिछा हुआ है।

यहां पर पेड़ भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा पोस्टर भी टंगा हुआ है जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है।

यहां पर कितने सारे जेंट्स दिखाई दे रही है।

आमने एक सड़क दिखाई दे रही है।

सामने एक बहुत बड़ा पुल भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर कितने सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

सामने दो ऑटो दिख रही है।

ऊपर ब्लू कलर की एक कपड़ा लगा हुआ है।

और दीवार पर एक पंखा भी लगाया गया है।

सामने एक कमरा दिखाई दे रहा है।